सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कि यहां पर बहोत सुन्दर सुन्दर--

दे रहे हैं आपको इस पिक्चर में देख सकते--

हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

आप यहां इस पिक्चर में एक शादी--